यहां पर एक ट्रेन जाती हुई दिखाई दे रही है और उसके सामने एक--

एक शटर भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

एक साथ रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं नीचे हरी-हरी घास भी दिखाई दे रही है और सामने दो खंबे लगे हैं जिसमें --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

दिखाई दे रही हैं नीचे रेड कलर के डब्बे--

यहां पर एक बहुत बड़ा हॉल है।

दुकान के सामने एक पिलर भी खड़ा हुआ है और बहोत सारा सामान।

यहां पे चारों तरफ काउंटर लगा हुआ है जिस पे बहोत सारा सामान कापी किताबें और--

पीले कलर के बोर्ड पे कुछ नाम लिखा हुआ है।

उसके पीछे दो तीन औरतें पानी में अंदर हैं और बोट भी चल रही है।

की ओर सामने एक और छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा है और उसके बगल पे--

हैंड पंप भी दिखाई दे रहा है और दो पेड़ भी लगे हुए हैं।

सात के अंदर बहुत सारा समान दिख रहा है कुछ काउंटर भी दिख रहे हैं।

यहां पर एक खाली मैदान नजर आ रहा है जिस पे बहोत सारे बच्चे--

शाइनिंग है और यहां पर बहोत सारे लोग लाइन लगाए हुए खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां एक कमरें में चार पांच चेयर रखी हुई है और सामने व्हाइट कलर की दीवाल है जिस पर--

चित्र बने हुए हैं और सामने उनकी परछाई दिखाई दे रही है।

घर के सामने बहोत सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

जहाँ बहोत सारी लड़कियाँ और लड़के--

और काले - काले पत्थर भी बीच में बीच में बहुत सारे पड़े हुए हैं।

दो तीन ड्रम रखे हुए हैं।

यहां पर एक बिल्डिंग खड़ी हुईं हैं जिसमें शीशे के खिड़कियां लगी हुई हैं और उसके नीचे--

एक दुर्गा जी की तस्वीर दिखाई दे रही हैं।

बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं सामने एक डोर मेट भी रखा हुआ है और बगल में--

और ऊपर ब्लू कलर पर विवो लिखा है।

बहोत सारी ब्लू कलर की चेयर्स रखी हुइ हैं।